यह वीवो मोबाईल का पिक्‍चर लगा हुआ हैं।

आप इस पिक्‍चर में देख सकते हैं यह रोड के ऊपर बहोत से लड़के खड़े हुए हैं।

ए.टी.एम. के बाजू में एक आदमी बाईक लेते हुए खड़ा हुआ है।